इसके नीचे एक रेड कलर की चेयर है ओर उसके आसपास बहोत सारे पेड़ पोधे भी हैं।

प्लेटफ्रॉम के आसपास पेड़-पौधे भी लगे हुए हैं।

और एक छोटा सा बच्चा भी खड़ा है और कई अ-एक फ़ूड एंड फन रेटोरेन्ट है।

और नदी के ऊपर से होकर एक ओवर ब्रिज गया हुआ है जहाँ से एक ट्रांसमिनशन लाइन भी गयी है।

सामने एक नदी है जिसमें से ओवेर्ब्रिज़ के पास से हो कर जाती है जहाँ बहुत बड़ी- बड़ी बिल्डिंगे हैं।

छोटे बड़े-लम्बे पेड़ लगे हुए है ।